इसमें लाल और नीली बॉर्डर की दरी नीचे बिछी हुई है ऊपर लाइट लगे हुए है ।

एक नीचा मटमेले रंग का छोटा डिब्बा भी रखा गया है।

पीला रंग दिखाई दे रहा है और छोटे छोटे बहोत लाइट लगे हुए है बीच में एक बहोत बड़ा झूमर भी टंगा हुआ है नीचे--

आकृति दिखाई दे रही है तथा बाहर कुछ।

इसमें सामने एक बहुत बड़ा पीले रंग का झूमर नजर आ रहा है सामने चार खंडों में --

बहुत बड़ा अंबा लिखा हुआ है तथा इस बिल्डिंग के सामने बहुत बड़ा ।